सामने कुछ स्टील के बर्तन दिखाई दे रहे हैं एक जग दिखाई दे रहा है ग्लास दिखाई दे रहा है कटोरे दिखाई दे रहे हैं।

इनमे थोड़ा सा पानी दिखाई दे रहा है उसमे कुछ घास उगी दिखाई दे रही है राइट साइड कुछ पेड़-पौधे उगे हुए दिखायी दे रहे है साइड में कुछ लकड़ी निकली हुई दिखाई दे रही है बिच में नदी के अंदर कुछ पत्थर भी पड़े हुए दिखायी दे रहे है।

यह किसी रूम का फोटो दिखाई दे रहा है जिसके अंदर बेड लगा हुआ है बेड के ऊपर एक चद्दर जिसके ऊपर आसमानी कलर के फुल बने दिख रहे है दो सामने कम्बल डले दिख रहे है उसके सामने दो तकिया दिखाई दे रहे हैं।